ये पार्क हमारे टहलने के लिए बनाया । सरकार काफी अच्छा काम करती है और ये पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें छाया मिले और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले।

और इनसे हमें फल भी प्राप्त हो और लकड़ी भी प्राप्त हो। काफी अच्छी चीज की है ये काफी बड़ी बढ़िया चीज है ये।